जैसे की मै यहाँ देख पा रही हूँ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु।

जैसा की मै यहाँ देख पा रही हूँ यह एक बंडीपुर टाइगर रिज़र्व है जो कि कर्नाटक का --

हमे यहाँ पर संतरे नजर आ रहे हैं केले नजर आ रहे हैं।

जैसे कि मै यहाँ देख पा रही हूँ ये काले बड़े टायर नजर आ रहें हैं जोकि सी _ए _अ_ट कम्पनी के नजर आ रहें हैं।